उस चित्र के सामने नीला आसमान एक बैंक दिखाई दे रहा है सफेद और हरी खिड़कियां नजर आ रही है।

इस चित्र के पीछे नीला आसमान सामने फूड ट्रैक दिखाई दे रहा है आसपास कोई व्यक्ति आते जाते नजर आ रहे है सामने की तरफ बाइके खडी दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ टेबल रखी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति सबका फोटो खींच रहा है बहुत बड़ी लाइब्रेरी जैसा दिख रही है।

इस चित्र में एक तीन चार व्यक्ति खड़े दिखायी दे रहे है सामने की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पिछे की तरफ नजर आ रहे है।

बाहर नीले प्लास्टिक दिख रहे है एक व्यक्ति समान खरीदारी करते नजर आ रह--

इस चित्र में हरे पेड़ दिख रहे सामने की तरफ एक महिलाए दिख रही है जो पानी में स्नान करके कुछ पूजा करते दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ लड़के खड़े नजर आ रहै महिलाओं का पूजा का सामान ऊपर दिख रहा है रखा हुआ।

रंगोली बना रहे हैं टीचर देख रहे है पीछे शटर खुला नजर आ रहा है।